थोडी सी दंथल लगी हुई है और फुलो के बीच मे एक छोटा सा लाल कलर का फुल दिखाई दे रहा है।

पेंट का लाईन बना हुआ दिखाई दे रहा है सामने सुरज डूब रहा है जिसका कलर पिला और लाल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर सामने एक कपडे कि दुकान है जहाँ पर बच्चों के बहुत सारे कपडे टंगे हुए है कुछ फ्रॉक है कुछ गुलाबी कलर कि --

यह सामने एक हरे कलर कि प्रेस दिखाई दे रही है कुछ डब्बे दिखाई दे रहै है जो लाल--

यहाँ पर बोहोत सारे छोटे- छोटे पौधे के आकार के पेड़ लगे हुए है जो बोहोत दूर तक --

लगे हुए है और उनके बिचो बीच बड़े पेड भी दिखाई दे रहै है सामने एक रास्ता है जिसपे हरी घास लगी हुई है।

ये केले दिखाई दे रहै है हरा धनिया रखा है और पन्नी मे निंबू रखे हुए है सामने टमाटर गाजर बैंगन रखा हुआ है।

सामने का पुरा हिस्सा है वो टूटा है अंदर के जो पार्टस है वो दिखाई दे रहै है।

यहाँ पर एक ऑफिस है और ऑफिस मे एक सर है जिनके पास पेन और पेपर रखा हुआ है एक काले कलर का टेलिफोन है।

सामने एक ऑफिस है और ऑफिस के डेस्क पे एक कंप्युटर रखा है जिसके स्क्रीन पे आइकोन दिखाई दे रहै है।